स्टेस में एक आदमी खड़े हो के गिटार बजा रहा है पीछे लोग आर्केस्ट्रा पियानो बजा रहे हैं।

तीन आदमी खड़े हैं आस पास हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

दीवाल पर रैक बनाये गए है रैक में --

कमरे के बीच में एक टेबल है टेबल के ऊपर सफेद कपडे में कुछ समान रखा है पीछे लोग बैठे हुए हैं।

दो आदमी खड़े है एक लाल रंग कि कुर्सी रखी हुई है --

दो खरिजा बनी हुई है। गोल्डन कलर के दो पिलर है।

तिल डंडा है जिसमें एक गद्दा रखा हुआ है।

बैनर को तीनो तरफ से फूलों से सजाया गया है।

उपर बड़ी-बड़ी इमारते और घर बने हुए है।

थोड़ी ही दूर टेलीफ़ोन का टावर दिखाई दे रहा --

पार्क मे चढ़ने के लिए रस्ता बनाया गया है रस्ते के दोनों तरफ--

पेड़ को काट के सजाया गया है सामने एक मूर्ति लगी है मूर्ति के सामने बड़ी सी लाइट जल रही है।

फलो की और सब्जियों की दूकान लगी हुई है दूकान के ऊपर पिली-पिली त्रिपाल बिछी है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग के आगे कुछ लोग बैठे हैं एक आदमी ने छाता लिया हुआ है।

जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए है और कुछ लोग चल रहे है।

एक खुला मैदान है मैदान में बहुत सारे ट्रक हैं।

एक महिला वाइट फ़ोन में बच्चे को कुछ पढा रही है।

पूल बना है पूल के अंदर पानी भरा हुआ है।

एक ट्रेडमिल के सामने बड़ी सी खिड़की है खिड़की के ऊपर ट्यूबलाइट लगी है।

सड़क के किनारे कुछ गाडियाँ खड़ी हैं गाड़ियों के सामने बड़ी सी बिल्डिंग है सड़क में एक आदमी चल रहा है।

इस सड़क में डिवाइडर बना है बीच में एक आदमी खड़ा है।

कागज़ के बड़े-बड़े गत्ते रखे हुए हैं।

एक रैक के ऊपर दरवाजा बना है जिसमें कांच लगा है कांच खुला हुआ है।